बहोत सुन्दर लग रहा है बहोत अच्छा लग रहा है बहोत ब्यूटीफुल लग रहा--

स्टेशन बहोत अच्छा लग रहा है बहोत खूबसूरत लग रहा है स्टेशन स्टेशन का कलर भी बहोत सुन्दर लग रहा है।

माजिद बहोत अच्छा लग रहा है बहोत सुन्दर लग रहे है और गेट भी बहोत सुन्दर लग रहे है बहोत अच्छा लग रहे है ।

बहोत अच्छा लग रहा है बहोत खूबसूरत लग रहा है मस्जिद बहोत ब्यूटीफुल लग रा है।

और लाइट भी बहोत खूबसूतर लग रहा है बहोत ब्यूटीफुल लग रहा है सैलून बहोत खूबसूरत लग रहा है।